और बहुत ही सस्ते दामों मे हर एक दुकान के मुकाबले मिलता है।

जो दिखने में बहुत ही अच्छे और बहुत ही मेहनत से इसे बनाया गया है।

अद्भुत सा ड्रॉइंग नजर आ रहा है गेट टाइप का और यह देखने में बोहोत बहो ही खूबसूरत है। यहाँ बोहोत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं।

इसके आस पास बहोत सारी मूर्तियाँ हैं। यहाँ बहोत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं।

धान वगेरा रोपी रोपा गया है।

यहाँ बहोत दूर दूर से लोग इ इसे देखने और घूमने के लिए आते हैं।